और इधर तालाब आर ने है ग्रिल पे देख सकते है अंदर भी ग्रिल लगा हुआ है ।

हेलो गाइस देख सकते है ये काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को --

कोई इधर से जा रहा है देख सकते हैं तालाब साइड में।

पहाड़ साइड मे रस्ते है देख सकते है की कितना मस्त रास्ता दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को चारो साइड बहुत ही हरा भरा से --